यहीं पे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट में कुछ टेबल्स दिखाई दे रहे हैं वाइट कलर का एंड कुछ चेयर्स दिखाई दे रहा है मरून कलर का--

ऊपर में लिखा है मीरा रोड अंदर में दिखाई दे रहा है स्टेशन का आदमी लोग आता जाता रहता है यहां पे।

ये एक सब्जी का दुकान दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारे सब्जी है हरा हरा सब्जी--

स्विमिंग पुल का सामने में जो होटल का एक गेट दिखाई दे रहा हैवह भी बदशाही टाइप का है सामने बैठने का जगह भी बहुत सुंदर है।

का कुछ वेट लिफ्टिंग का जड़ने का कुछ झुलने का समान है।

यहां पे बडीका की ग्रूमिंग चलता है रोड के ऊपर ही है ब्लैक कलर का बिल्डिंग है।

सुंदर सजा हुआ है बाहर से जो दिखाई दे रहा है।

ये एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हदर---

काट का करके रखा है जिसके ऊपर गत्ता रखा है दो उसके पीछे--

कुछ पीलो रखा है यहां पे संगीत करने के लिए तबला एंड गिटार रखा हुआ है।

यहां पे कुछ जिम का सामान दिखाई दे रहा है कुछ आदमी औरत लड़का लड़की दिखाई दे रहा है।

मजर टाइप का दिखाई दे रहा है जहां पे सब आदमी और आप पे प्रार्थना कर रहा है।

बट क्लीन करके रखा है पूरा एक घूमने का जगह टाइप का लग रहा है बहुत सुंदर है जगह।